ये देखिए जो आपको दिख रहा है ये काफी अच्छा सीन है ये देखिये ये नदी है नदी के बीच ये फुबारा चल रहा है जोकि कहा राजस्थान के नागौर में है ये देखो काफी अच्छा दिख रहा है।

और यह जो है नदी जो कहां की राजस्थान के नागौर की ये जो नज़र आ रही काफी बड़ी नदी है।

यह देखिए जो आपको दिख रहा है जोधपुर विकास विद्यालय जो कि कहां राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है यह देखिए जो विद्यालय है।

ये देखो ये जो दिख रा है ये दिख रा है हमको सिनेमा होम जहा पे ये टी.वी. देखते है काफी अच्छा है ये थियेटर है देखो यहा पे यो दो ये रखे हुवे है काफी चेयर लोग यहा पे आते है बैठ ते है।

जोकि राजस्थान के नागौर में है और यह होटल को आप देख सकते हैं काफी अच्छा होटल है यह देखो कितना बड़ा है और यहां पर कितनी सारी चेयर डली हुई हैं यह होटल में कई लोग आते हैं रुकते है और यह देखो इसकी फैसिलिटी काफी अच्छी है।

ये जो भवन का मेन गेट दिख रहा है जहाँ पे एक इंसान खड़ा है काफी बड़ा गेट है और ये देखो ये भवन है।

यहां पर दुकान वगैरा भी खाना वगैरा भी सब मिलता है चाय यहां पर लिखा है स्पेशल कॉफी --

ये देखिए ये जो अपको नजारा दिख रहा हेे जोकि ये राजस्थान के नागाेेर का हेे ये देखिए वही पे एक तालाब हेे तालाब के बीच मे एक घर बना हुआ है घर के राइट साइड से देखिये काफी बड़ी हरयाली हेे।

ये देखिये ये जो आपको नज़ारा दिख रहा है ये जो नज़ारा है कहाँ का है ये हाइबे रोड का है जो की ये कहाँ के राजस्थान के नागौर जिले का है और ये आपको देख सकते है यहाँ से जो कार निकलती हुई नज़र आ रही है।

ये देखिये ये जो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे जो स्वामीविवेका नंद की फोटो लगी बैनर लगा है जहा पे ये जो है और ये यहाँ पे कुछ फंक्शन होने वाला है।